यह एक मार्केट है उस मार्केट में एक बैंक बनी हुई है।

यह एक ए_टी_एम है मशीन रखी हुई है जहा उसका दरवाजा कांच का बना हुआ है।

यह एक पार्क बना हुआ है। उसमें कुछ टीन शेड के बहोत सारे बैठने के लिए नीचे बनाए गए हैं।

यह एक नदी है उस नदी के पास से एक रास्ता गई है जो कच्ची बनी हुई है|

यह एक ऑफिस है। उस ऑफिस के ऊपर उसका नाम डला हुआ है। नीचे खिर्क अ बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ है।

यहाँ एक किराने की दुकान है उस किराने की दुकान में कुछ डब्बे रखें हुए हैं सामने।